प्ला भी लगा हुआ है।

शिमला मिर्च है और बोधी भी है और खीरा है और लौकियां हैं और --

और ढेर सला बोतल है।

और स्कूल में एक बेंच है।

एक रोड है रोड में बाइक दूर चल रही है और एक कार भी है।

यह एक दुकान है दुकान में फ्रिज कैमरा लगा हुआ है एक आब्दीन खड़ा है।